और उधर गेट भी है और यह बैलून से गेट बनाया है और सुन्दर सा सजाया कुछ अदमी भी है और बहोत सारे लाइट भी है और अदम आ दरी बिछाया हुआ है।